यहाँ लड़की है बैठे हैं पढ़ रहे हैं लाल सफेद पेंट पोताया है दरवाजा है।

यहाँ बच्चे है पढ़ रहे है यहा दरवाजा है खिड़की है बेंच है।

आदमी आए हैं बहुत अच्छा है सुन्दर है लड़कियां आए हैं।

यहाँ बच्चे हैं मैंम हैं अ स्कूल है दरवाजा हैं पेंट हैं लाल शर्ट और बच्चे हैं।

यहाँ बोहत सुन्दर है यहाँ अ अ बंदी हैं यहाँ लड़का हैं नदी है।

दवाई दुकान है हैं बोहत अच्छे हैं सुन्दर हैं। बहुत अच्छे हैं। .]

बहुत अच्छा हैं सुन्दर हैं आदमी हैं पेड़-पौधें हैं सुन्दर हैं बहुत अच्छा हैं सुन्दर हैं घर हैं आ-- लड़के बच्चे हैं अच्छे हैं खेल रहे हैं |

यहाँ यहाँ बाजार हैलगा है यहाँ आदमी है बाजार करने आये हैं यहाँ बहुत सुन्दर है पेड़-पौधे हैं।

--अच्छा दिख रहा है टेक्टर ट्रैक्टर हाई थ्रेसर ले के आया है बहुत अच्छे है लड़के है सफ़ेद रंग के बोरा है लाल रंग का बोरा है।

यहाँ लाइट हैं यहाँ सब लरकी हैं सफेद रंग के पहन लुग्गा पिंधीन हय यह बहुत अच्छा है सुन्दर है।

यह बहुत अच्छा है ऑटो है बहुत अच्छा सजाया हुआ है घर है सफेद रंग का घर हैबहुत अच्छा है बाइक है स्कूटी है बहुत अच्छा है सुन्दर है घर है लाल रंग का घर है सफ़ेद रंग का घर हैं।

बहुत अच्छे हैं लड़कियां है कसरत कर रही है सफेद रंग के सफेद रंग के कपड़े पहने हैं।

यह सफेद रंग का घर है बहुत अच्छा है खिड़की है दरवाजे है मोटरसाइकिल है स्कूटी है बहुत अच्छा है सुन्दर कुर्सी है।